जल रहे हैं जिसके बाहर कुछ चेयर रखी हुई है और एक हरे रंग का डस्टबिन भी रखा हुआ है।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

दुकान का फोटो है और यहां पर कुछ कुर्सी और मैट रखी हुई है और--

चाय का रखा हुआ है और यहां से--

और साथ में एक दोस्ती पॉइंट जूस कॉर्नर की दुकान भी है जिस पर कुछ केले और--

जूते और चप्पल भी रखे हुए हैं और सुंदर से सैंडल भी रखे हुए हैं।

गाड़ियों के गैराज का फोटो है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है।

किसी बिल्डिंग का फोटो है इसमें हमें एक बाइक और एक स्कूटी दिखाई दे रही है और--

बुक किए जाते हैं और इस यहां पर कुछ--